ये तस्वीर एक आलू की तस्वीर है जहां पर बहुत सारे आलू एक दूसरे के ऊपर नीचे रखें हुए हैं।

चेयर्स भी है और एक क्लॉक भी है।

जिन पर लाल कलर के कारपेट रखे हुए हैं।

तस्वीर पर एक सोफे है और सोफे की आगे एक शीशे की टेबल है।

और इस नदी के कोने कोने पर बहुत बड़ा बड़ा गछिया भी है और आसमान सफेद है।

ये तस्वीर एक रिसॉर्ट की है।

उसके सामने बहुत सारे गछिया भी है और --

इस तस्वीर पर बहुत सारे शर्ट हैंगर पर टंगा कर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर पर पैंट्री है एवरग्रीन है और बहुत सारे गच्ची है ग्रास भी है।

और इसके आगे पूरे एवरग्रीन और फूलों से सजा कर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर की दीवार पर बहुत सारे ग्रेट मेन की पेंटिंग है।

और अधिक कुर्तियां हैंगर पर टंगा कर रखे हुए हैं।

जींस पैंट भी हैंगर पर टंगा कर रखे हुए हैं और लाइट जवल रही है पंखे चल रहे हैं।

इस पर जे_इ_इ और मेडिकल और नीट भी लिखे हुए हैं।

और इसपर पटना भी लिखी हुई है।

एक लाल से कपड़े पर अरमानी एक्सचेंज लिखी हुई है।

सामने एक पगोडा भी है जिसके ऊपर एक गोल्डन सा सुंदर सा बहुत--